और घर व्हाइट कलर का कलर किया गया है।

यहां पे दो तोता है और उसके बाहर एक आदमी है आदमी तोता से बात कर रहा है और तोता आदमी के बात समझता है और चारों तरफ से पिंजरा घेरा हुआ है लोहे का।

और व्हाइट कलर का ग्रीन कलर का रेड कलर का नीचे में कलर किया गया है।

और ये पुरुष के हाथ में हेलमेट है और बहुत बड़ा घर है।

तीन बलफ हैं और बहुत सारा आदमी हैं।

एक एक काला कलर का है और एक हरा कलर का है और एक ब्लू कलर का है गुलाबी कलर का है बोहुत सारा कलर का है।

ऐसा लग रहा है की कुछ यहाँ पे हो रहा है।

जहाँ पे बहुत सारा आदमी है बहुत सारा गाड़ी भी है और खिड़की बहुत सारा है। कार भी दिखाई दे रहा है और बुलेट भी दिखाई दे रहा है।